ये एक मार्क आ रोड पर मार्केट जैसी ए लग रही है यहां कुछ सब्जियां रखी हुई है और अ एक आदमी दिख रहा आ जो सब्जी बेच रहा है।